इस के दुकान के अंदर कुछ चावल की बोरियां रखी गई है और --

और और दो आदमी टाइल्स को ठेला पर रख रहे हैं और --

जो देखने में काफी बड़ा है अअ इसके चोरो तरफ हरे-भरे बृक्ष लगे हुए है।